ये देखिए काफी लोग यहाँ है बहुत बडा बडा बिल्डिंग है बहुत खूबसूरत रोड भी है यहां मास्क लगाकर दो तीन आदमी भी हैं खडे पान अपना खा रहे हैं गाडी भी खडी है।

एक लड़की है उसका बाल को ब्यूटी पार्लर में बना रहे हैं खूबसूरत जोकि दुनिया को दिखे खूबसूरत डिज़ाइन कई तरह के उसके डिज़ाइन निकाले गए हैं।

खेल वेगरा खूबसूरत है

ये देखिए गुफा है चट्टान का उसमें एक आदमी बिना अपनी जान का परवाह करेने बिना घुसा है अ उसको देखिए --

खिड़की दरवाजा वो भी सब मौजूद है दिखने में भी खूबसूरत दिख रहा है अगल -बगल जो भी हैं।